इस तस्वीर में मुझे एक संगमरमर का पत संगमरमर का मंदिर दिख रहा है जो पूरा व्हाइट है और दिखने में खूब अच्छा लग रहा है।